इसमें एक बूफ़र भी रखा हुआ है और कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है।

और उसके पीछे बोर्ड भी लगा हुआहै।

और साइड में ड्राई भी टंगा हुआ है।

इस फोटो में एक बास्केटबॉल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक आदमी दिख रहा--

इनमें एक नीला ड्रम भी रखा हुआ है।

कुछ दुकानें भी नजर आ रही हैं।

इसमें एक झोपड़ी सी भी बनी हुई है।

नीचे मट्टी भी दिख रही है।

और इसमें कुछ वूफर भी रखे हुए हैं।

इस पर झंडा लगे हुए हैं।

इनमें पत्थर भी बिछा हुआ है।

और इस पर एक पोस्टर लगा हुआ है।

इसमें एक पंखा भी लगा हुआ है।